यहां दुल्हन सजाते है यह दुल्हन को मेहँदी भी लगाए जाते है।

यह चर्च में बहुत सारे ईसाई धर्म के आदमी भी हैं। यहाँ पर --

यह सड़क बहुत बड़ी है यह सड़क पर बहुत सारी भीड़ लगी हुयी है यह सड़क के किनारे बहुत सारे छोटे बड़े गाड़ियाँ भी हैं यह सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े दुकानें भी हैं।

यह पंडाल कपडे एवं दरी से बनाए गए हैं यह पंडाल के नीचे बहोत सारे गमले में फिर --

है। यह स्कूल काफ़ी बड़ी है यह स्कूल में काफ़ी सारी बेंच भी उम कुर्सियां भी हैं।

यह सब लड़की एक झुण्ड बना कर अपने पैर को पकड़ कर योगा कर रही है ।